और एक ने सफेद सफेद पेंट --

यहां पे हरे-हरे रंग का टब है इस टब में ये पानी भर रहा है जाल दिख रहा है आपको चारों तरफ --

यहां देख सकते हो आप बहुत अच्छे फूल दिख रहे हैं ये गेंदे के फूल हैं और देखने में बहुत सुंदर दिख रहे हैं यहां पे चारों तरफ फूल ही फूल --

और ऊपर वो एक तस्वीर दिख रही है।

यहां पे एस_बी_आई ए_टी_एम लिखा हुआ हैं।

आप देख सकते हो यहां पे बहोत सारी पत्ते दिख रहे हैं पेड़ दिख रहे हैं।